और दो स्कूटी है बाइक और एक कार खड़ी है और ऊपर नीला आसमान है और --

बिल्डिंग है उसके ऊपर जाली लगी हुई है नीले कलर की खिडकियां है।

जैसे की आप चित्र में दिख रहे हैं राइफल मेन गब्बर सिंह नेगी इसी इस मारकर का बोर्ड लगा हुआ है